यहाँ पे नदी है नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पे कुछ बोट भी है और बोट के ऊपर कुछ लोग भी हैं।

खूब सुन्दर लग रही है देखने में बहुत अच्छी है ब्यूटीफुल है ।

और बहुत खूब सुन्दर है कुछ पेड़-पौधे भी हैं ।

कुछ सामान के लिए और ओवरऑल बहुत अच्छी है ब्यूटीफुल है ।

जो हॉल को बहुत अच्छी से दिख रही है।

दो-तीन लोग भी या पे रुका हुआ है।

ओ बहोत ही ब्यूटीफुल है।